ऊपर हरे रंग का तिरपाल या प्लास्टिक लगा है।

नीचे जमीन का रंग भूरा है।

दोनों स्टील के हैं।

दाईं तरफ ऊपर में पेप्सी का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने ऊपर अखड़ा लिखा हुआ है दो बार।

सामने कई मूर्तियां है।

उस पर नेस्कैफे नेस्कैफे लिखा है।

जिसका रंग नीला है गले में लाल रंग की ब्लूटूथ है।

तस्वीर किसी पक्षियों की दुकान की लगती है।

लोहे के रॉड पर बैठी है।

चारों ओर लोहे का पिंजड़ा भी लगा हुआ है।

ऊपर सीलिंग सफेद रंग की है।

दाई तरफ एक बिल्डिंग दिख रही है।

बलूंस भी लगे हुए हैं जिनका रंग लाल तथा सफेद है।

शायद सर्विसिंग की दुकान है।

सामने एक व्यक्ति नीला टी शर्ट और काला पेंट पहने मिरर सेल्फी ले रहा है।

और नागरमल मोदी सेवा सदन लिखा है।

यह तस्वीर किसी चिड़ियाघर की लगती है।

हाथी की एक दांत भी है।

ऊपर एक पेड़ की कुछ पत्तियां लटकी दिख रही है।

पास खड़े हैं एक ने हाथ में पेन तथा कॉपी पकड़ रखा है।